तो यह एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पे अभी एक भी ट्रेन मौजूद नहीं है लेकीन यह स्टेशन बोहोत साफ सुथरा है यहाँ पे एक दुकान है।

और यहां पर बच्चे एस बना कर बैठे हुए है और ये बच्चों ने सफेद शर्ट और ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई है।